एक पोस्टर पर लिखा है सम्मेलन चौदह फरवरी एक डांसर भी है वो भी बहुत ही अच्छा कलर का कपड़ा पहना हुआ।

एक फील्ड है उसमे लोग मोमबत्ती दिया जलाते है तीन औरत खड़ा हुआ एक मरद खड़ा हुआ।

साइड में मकान है उसके बाद साइड में झोपडी भी है। झोपड़ी काग़ज़ का नहीं है लकड़ी का बना हुआ।